और पुतले के सामने में सजाया गया है।

यहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है और बहुत सारे आदमी सब दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर सीधे मुँह --

योगा करने के लिए आते हैं सबेरे-सबेरे और यहाँ पे --

और बिल्डिंग के सामने हीं दो पौधे लगाए हुए हैं और वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो बिल्डिंग को देख रहा है।

यहाँ पे एक घर है और घर में बहुत सारे खूबसूरत-खूबसूरत --

यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है और --

और यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप और एक बोर्ड भी टँगा हुआ है और एक भगवान का --

और डी.जे. के सामने बहुत सारे बिल्डिंग्स खड़ी हुए हैं और ऐसा लग रहा है पीछे कोई फंक्शन या शादी में जा रहा है।